टक्स टाइपिंग के परिचय पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप टक्स टाइपिंग और टक्स टाइपिंग इंटरफेस के बारे में सीखेंगे
आप सीखेंगे कि कम्प्यूटर कीबोर्ड पर जिसमें अंग्रेज़ी कीज हैं स्पष्टतः तेज़ी और निपुणता से टाइप कैसे करें
आप टाइप करते समय हर बार नीचे कीबोर्ड पर देखे बिना टाइप करना भी सीखेंगे
टक्स टाइपिंग क्या है
टक्स टाइपिंग एक टाइपिंग ट्यूटर है
यह आपको सिखाता है कि संवादात्मक गेम्स का उपयोग करके टाइप कैसे करें और धीरे धीरे आपको भिन्न अक्षरों को टाइप करने से परिचित कराता है
आप अपनी गति से टाइपिंग सीख सकते हैं
और धीरे धीरे विशुद्धता के साथ अपनी टाइपिंग रफ्तार बढ़ा सकते हैं
टक्सटाइपिंग आपको अभ्यास के लिए नये शब्द प्रविष्ट करने और टाइपिंग के लिए भाषा को सेट करने के लिए सक्षम बनाता है
यहाँ मैं उबंटू लिनक्स 1110 पर टक्स टाइपिंग 180 का उपयोग कर रहा हूँ
आप उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर का उपयोग करके टक्स टाइपिंग संस्थापित कर सकते हैं
उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर पर अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर उबंटू लिनक्स के टयूटोरियल्स का अनुकरण करें
टक्स टाइपिंग खोलें
पहलेDash होम पर क्लिक करें जो आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप के सबसे ऊपर दायें कोने पर एक गोल बटन है
सर्च बॉक्स प्रदर्शित होता है
डैश होम के आगे सर्च बॉक्स में टक्स टाइपिंग टाइप करें
सर्च बॉक्स के नीचे टक्स टाइपिंग आइकन प्रदर्शित होता है
टक्स टाइपिंग आइकन पर क्लिक करें
टक्स टाइपिंग विंडो प्रदर्शित होती है
टक्स टाइपिंग में निम्न मेन्यू शामिल हैं
फिश कैसकेड - खेल क्षेत्र
कॉमेट ज़ैप - एक अन्य खेल क्षेत्र
लेसन्स - जिसमें विभिन्न पाठ शामिल हैं जो हमें अक्षरों को सीखना सिखायेगा
आप्शंस - जिसमें मेन्यू शामिल हैं जो हमें शब्दों को संपादित करने वाक्य टाइप करने टक्स टाइपिंग प्रोजेक्ट पर जानकारी प्राप्त करने और भाषा को सेटअप करने में मदद करता है
क्विट - खेल छोड़ने के लिए क्लिक करें
पाठों का उपयोग करके टाइप करने का अभ्यास करते हैं
मुख्य मेन्यू में लेसन्स पर क्लिक करें
पाठ सम्मिलित विंडो प्रदर्शित होती है
पहला पाठ सीखने से शुरू करें
basic lesson 01xml पर क्लिक करें
निर्देशों के साथ विंडो प्रदर्शित होती है
निर्देश पढ़ें
पाठ शुरू करने के लिए स्पेस बार दबाएँ
कीबोर्ड के साथ विंडो प्रदर्शित होती है
अब हम अक्षर आ टाइप करना सीखना शुरू करेंगे
अभ्यास शुरू करने के लिए प दबाएँ
एक विंडो जो टाइप करने के लिए अक्षरों को दर्शाती है प्रदर्शित होती है
यह लाइन क्या दर्शा रही है एए aaa
आपको इन अक्षरों को टाइप करने की आवश्यकता है
इस लाइन को टीटर्स लाइन नाम दें
अब हम अंग्रेजी कीबोर्ड देखते हैं जो हममें से ज्यादातर द्वारा उपयोगित स्टैंडर्ड कीबोर्ड है
क्या आप आ के चारों ओर लाल वर्ग देख रहे हैं
यह दर्शाता है कि यह वह अक्षर है जिसे अब आपको टाइप करना होगा
कीबोर्ड की पहली लाइन संख्या विशेष अक्षरों और बैकस्पेस की दर्शाती है
टाइप किये गये अक्षरों को मिटाने के लिए Backspace की दबाएँ
कीबोर्ड में वर्णमाला संख्या और अन्य अक्षरों की तीन रोज़ भी होती हैं
कीबोर्ड की दूसरी लाइन में वर्णमाला कुछ विशेष अक्षर और Enter की सम्मिलित हैं
अगली लाइन पर जाने के लिए आप Enter की दबा सकते हैं
कीबोर्ड की तीसरी लाइन में वर्णमाला कोलोन सेमीकोलों और कैप्स लॉक की हैं
बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक की का उपयोग करें
कीबोर्ड की चौथी लाइन में वर्णमाला विशेष अक्षर और shift की सम्मिलित हैं
बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए किसी भी वर्णमाला की को Shift की के साथ दबाएँ
की में ऊपर दिए गये अक्षर को टाइप करने के लिए Shift की को किसी भी दूसरी की के साथ दबाएँ
उदाहरणस्वरुप संख्या 1 वाली की में ऊपर विस्मयादिबोधक चिह्न है
विस्मयादिबोधक चिह्न को टाइप करने के लिए 1 के साथ Shift की दबाएँ
कीबोर्ड की पांचवी लाइन में Ctrl Alt और फंक्शन कीज़ सम्मिलित हैं
यह स्पेस बार को भी सम्मिलित करता है
अब देखते हैं यदि यहाँ टक्स टाइपिंग कीबोर्ड लैपटॉप कीबोर्ड और डेस्कटॉप कीबोर्ड में कोई भिन्नताएँ हैं
ध्यान दें कि टक्स टाइपिंग कीबोर्ड और लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में इस्तेमाल किये जाने वाले कीबोर्ड्स समान हैं
अबअब कीबोर्ड पर अपनी उँगलियों का सही स्थान देखते हैं
इस स्लाइड पर देखें
यह उँगलियाँ और उनके नाम दर्शाता है
बाएँ से दायें ओर उँगलियों के नाम हैं लिटल fingerरिंग fingerमिडल फिंगर इंडेक्स फिंगर और थंब
अपने कीबोर्ड पर अपना बायाँ हाथ कीबोर्ड की बायीं तरफ रखें
यह सुनिश्चित कर लें कि छोटी ऊँगली अक्षर आ पर हो अनामिका अक्षर एस पर हो मध्यमा अक्षर डी पर हो तर्जनी अक्षर फ़ पर हो
अब अपना दायाँ हाथ कीबोर्ड की दायीं तरफ रखें
सुनिश्चित कर लें कि छोटी ऊँगली कॉलनसेमीकॉलन की पर हो
अनामिका अक्षर ल पर हो मध्यमा अक्षर क पर हो तर्जनी अक्षर ज पर हो
स्पेस बार को दबाने के लिए अपना दायें अंगूठे का इस्तेमाल करें
दो हाथों का चित्र आपको अक्षर को टाइप करने के लिए सही ऊंगली के उपयोग में मार्गदर्शन करेगा
जानें कि दायें हाथ की छोटी ऊँगली की लाल क्षेत्र क्या है
आपका अंदाजा सही है
आपको आ टाइप करने के लिए उस ऊँगली का उपयोग करना है
कीबोर्ड पर अपनी ऊँगलियों को रखें जैसा कि पाठ में पहले दर्शाया गया है
अब टाइपिंग शुरू करें
जैसे ही हम टाइप करते हैं अक्षर टीचर्स लाइन के नीचे लाइन में प्रदर्शित होते हैं
इसे स्टुडेंट लाइन नाम दें
अब वो अक्षर टाइप करें जो टीचर्स लाइन में प्रदर्शित नहीं हैं
क्या आपने देखा कि गलत टाइप किए अक्षर स्टुडेंट लाइन में प्रदर्शित होते हैं
यह प्रदर्शित नहीं होते
इसके बजाय कीबोर्ड में गलत टाइप किए गए अक्षर पर एक एक्स चिन्ह कुछ समय दिखाई देता है
अब कुछ और अक्षर टाइप करें
अब अपनी टाइपिंग के मैट्रिस की गणना करें
अब आपको अनुमान लगाना होगा कि दायीं ओर की फील्ड्स क्या दर्शाती हैं
टाइम - आपकी टाइपिंग की गति को निर्दिष्ट करता है
चार्स -आपके द्वारा टाइप किए गए अक्षरों की संख्या दर्शाता है
सीपीएम आपके द्वारा प्रति मिनट में टाइप किए गए अक्षर दर्शाता है
डब्ल्यूपीएम - आपके द्वारा टाइप किए गए शब्दों की संख्या निर्दिष्ट करता है
एरर्स - आपके द्वारा टाइप की गई गलतियों की दर्शाता है
एक्यूरेसी - आपकी टाइपिंग की शुद्धता को दर्शाता है
मुख्य मेन्यू में वापस जाने के लिए एस्केप की को दो बार दबाएँ
हमने अपना पहला टाइपिंग पाठ सीख लिया है
कम गति में शुद्ध टाइप करने के लिए पहली बार सीखने के लिए यह अच्छा है
एक बार हम बिना गलती किए शुद्ध टाइप करना सीख लें हम टाइपिंग गति बढा सकते हैं
इसी के साथ हम टक्स टाइपिंग पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने टक्स टाइपिंग इंटरफेस के बारे में सीखा
अपना पहला टाइपिंग पाठ पूर्ण किया
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
basic lesson 02xml पर जाएँ
इस लेवल के साथ अभ्यास करें
इस लेवल में सभी अक्षरों का टाइप करें और Enter की दबाएँ
इसी तरह से आप दूसरे पाठ का अभ्यास कर सकते हैं
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखेंhttpspoken tutorialorgWhat is a Spoken Tutorial यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध हैspoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आईआईटी मुम्बई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ